भैंसें चाराओं को चर रही हैं मस्त मंदिर जैसे राजा --

यह एक नदी जैसी दिख रही है यहाँ विशाल नदी बड़ा - सा दिख रहा है आर - पार मस्त टापू है।

यह एक कपड़ा दुकान दिख रहा है जहाँ जिसका नाम सिद्धि-विनायक गारमेंटस साड़ी शॉप रखा गया हैं।

यहाँ कई लोग मछली पकड़ कर मछलियों को बेचने लिए लाए हैं।

मस्त पेड़ पौधे लगे हुए हैं एकदम बढ़िया से दिख रहा है मस्त सुंदर हरा भरा --

समुद्र जैसे दिख रहा है ऊपर से सूर्य भी दिख रहा है नावे लगी हुई है दिखाई दे रहा है।

सूर्य एकदम सुन्दर दिख रहा है समुंद्र की पानी के एकदम ठंडी खारी दिख रही है बहुत सुन्दर दिख रहा है।

यहाँ एक बस स्टैंड स्टेशन है जहाँ बैठने के लिए बहुत अच्छी सुविधा की गई है लोग यहाँ रात को आराम कर सकते है।

यह एक मटन चिकन फिश मार्केट है जहाँ कई प्रकार के फिश दिखाई दे रहै है।

मछलियाँ रंग-बिरंगी की दिखाई दे रही है कोई छोटी कोई बड़ी और यहाँ लेने की लिए बहुत सारे लोग आए हुए है बड़ा भीड़ दिखाई दे रहा है।

नरसिंह देव भी हैं इधर विश्वकर्मा देव जी भी रखे गए हैं।